रेड कलर की कैप पहनी हुई है वो लड़के दो पिज़्ज़े लिए हुए हैं उन्होंने पिज़्ज़ा खा रहे हैं।

जैसे कि मैं सामने देख पा रही हूं कि मिल्क शेक का कैफे --

कलर्स अवेलेबल हैं इसमें और जो ये बॉक्स है एन बॉटल्स भी हैं ऑयल की बहौत सारी।

पेड़ उसके बाजू में एक लड़का बैठा है ग्रे कलर की टी शर्ट पहन के ब्लैक कलर का जिंस --

एक भैया का पैर दिख रहा है येलो टॉप हैं ।

बहुत खतरे का एरिया है बच्चा--